भैया खड़े हुए है जो की व्हाइट कलर की शर्ट और कलर की पैंट पहने है और सामने कुछ रंग-बिरंगे पैर रेलिंग मे पेंट भी पुती हुई है और सामने बहुत सारे दरवाजे दिखाई दे रहे है और यहा पे बहुत सारा पानी भी भरा हुआ है।

भैया खड़े हुए है जो की व्हाइट कलर की शर्ट और कलर की पैंट पहने है और सामने कुछ रंग-बिरंगे पैर रेलिंग मे पेंट भी पुती हुई है और सामने बहुत सारे दरवाजे दिखाई दे रहे है और यहा पे बहुत सारा पानी भी भरा हुआ है।

कलर का पैंट और ब्लैक कलर का शूज भी पहने हुए है पिंक कलर की टी-शर्ट और ब्लैक कलर का पैंट भी पहना हुआ है भाई--

यहा पे एक लेडी का बाल काट रहे है भैया उन्होने चोटी बांधी हुई है और ये ग्रे टी-शर्ट और पिंक पैंट पहने हुए है सामने भैया।

सब लोग दिखाई दे रहे हैं और ये छोटू फोटो ले रहा है इनकी शर्ट का कलर ब्लू है और ये बनियान पहना हुआ है छोटू इनकी छोटू कि शर्ट का कलर रेड है |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

सामने यहाँ एक लड़की दिखाई दे रही है जिसने रेड कलर की सारी और गजरा भी पहना हुआ है व्हाइट कलर का हाथ में रेड कलर कि चूड़ी भी पहनी हैं पीछे यहाँ पोस्टर भी दिखाई दे रहे हैं जिनमें यह दिखाई दे--

कुछ लोग दिखाय रहे हैं जिन्होंने गोल्डन और रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ है और एक भैया सेल्फ़ी स्टिक मोबाईल लाकर सेल्फ़ी ले रहे हैं

मकान बना हुआ है एक घर भी बना हुआ है और लाइट भी जल रहा है ऊपर ऊपर एक प्लस का नीसान और बना हुआ है और सब लोग अंदर जा रहे हैं कुछ लोग बाहर मोमबत्तियाँ जल रहे हैं

पहाड़ों में बहोत सारे छोटे छोटे पौधे भी दिखाई दे रहे हैं और पहाड़ के अंदर एक रस्ता भी गया हुआ है काफी कुछ भी दिखाई दे रही हैं और ]

यहा पे सिटी सेंटर सलून लिखा है गोपाल गंज ए. सी. सेन ए. सी. सलून यहा पे लिखा हुआ है यहा पे रेड कुर्सी भी लगी हुए है सामने एक चप्पल भी उतरा है और कांच के दरवाजे भी लगाया गया है।

जो व्हाइट कलर कि फ्रॉक और रेड कलर कि टोपी और कमर में रेड स्कार्फ भी लगाया हुआ है सामने कुछ बसें दिखाई दे रही हैं जिनके बस का कलर येल्लो है और सामने एक घर भी दिखाई दे--